एक गेस्ट हाउस है जिसमें सड़क पे लाल रंग की कारपेट पीछे हुई है।

गेट के पास में सफेद और पीले रंग के गुब्बाड़ें लगे हुये हैं दुकान के अंदर एक कुर्सी पड़ी हुई है।

नदी के पास में मिट्टी का टीला है जहां पे बहुत सारे हरे पेड़ लगे हुए हैं।

एक गोदाम है जिसमें टीन पड़ी हुई है जो नीले रंग की है।

एक फोटो लगी हुई है जिसमें घोड़े दौड़ रहे है छत पे एक सफेद रंग का पंखा लगा हुआ है दीवाल पे एक ए_सी लगी हुई है।